यहां पर एक रूम में पेपर छापने वाला मशीन है।

इस चित्र में एक दुकान है।

बहोत सारे फोटो लगे हुए हैं और एक घड़ी है।

और इस रूम का रंग व्हाइट और ब्राउन है।

उसमें लकड़ियां रखे गए हैं।

इस चित्र में बहुत सारे कवर लगाए हुए है।

और बहोत सारे कुर्सियां है जो ब्लू और रेड कलर के हैं।

इस क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र हैं।

इस रूम में एक पेपर छापने का मशीन है जो ब्राउन ब्लैक कलर का है और इसके अगल बगल कंप्यूटर फैन और बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं।

इस चित्र में बहुत सारे कवर्ड है।

जो व्हाईट कलर का है और इसके ऊपर दो टंकिया लगे हुए हैं।

और इसके अगल बगल बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे हैं और इसके बाहर सीढ़ियां लगी हुई हैं।

और इसके बगल में एक घर है जिसमे ग्रील लगा हुआ है और ग्रील लोहे का है और ब्लैक कलर का है।

यहां पे खड़ा हुआ है और उसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

एक सिलेंडर गैस भी है जो रेड कलर का है।

जिसमें एक सूखा पेड़ है।

जिसमे बहुत सारे समान टंगे हुए है।